तस्वीर दिखाया गया है और इस मॉल का नाम वी मार्ट है और यहां पे कई पुतलवे दिखाई दे रहे हैं जिसमें से नए-नए मॉल के कपड़े --

और यहां मंदिर को एक बेहतरीन कलर से कलर भी किया गया है।

सैलून का नाम हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सैलून भी लिखा हुआ है और सैलून में --

यहाँ पे हमें करीबन पाँच छे बस दिखाई जा रही है और यह सभी --

आदमी दिखाई दे रहा है जो हालांकि फिलहाल वह जिम में है और जिम में वह बॉडी बनाते हुए भी हमें दिखाई दे रहा है।

टेरेस टेरेस भी दिखाया जा रहा है और बगल में एक बच्चे भी खड़े --

और यहां पे बीच में एक हमें स्मार्ट बोर्ड भी नजर आ रहा है और उसके ऊपर एल.ई.डी. बल्ब लगे हुए हैं और हमें एक पंखा भी नजर आ रहा है।

इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे सभी लोग लाइन से लग के योगा कर रहे --

है टीचर है वे उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में कुछ स्मार्ट बोर्ड के द्वारा बता रहा हैंऔर सभी बड़े ध्यान से उनके बातों को भी --

सुनते हुए नजर आ रहे हैं।